ये एक टाकिस नजर आ रहा है टाकीस के ऊपर एक का बोर्ड लगा हुआ है एक आदमी नीचे खड़ा हुआ है।

ये एक इंडियन ऑइल पेट्रोल टैंक है यहाँ पर खंभा लगा हुआ है।

बैंक का नाम है इंडियन बैंक बैंक के ऊपर टावर लगा हुआ है जिसके ऊपर किप्स लिखा हुआ है और ये बिल्डिंग --

यहां पे टेबल पे चार-चार कुर्सियां लगा हुआ है और रेस्टोरेंट के अंदर जाने का --

यहाँ पे एक बिल्डिंग नजर आ रही है बिल्डिंग के नीचे जे_सी_बी मशीन रखी हुई है जे_सी_बी मशीन के पास एक ।

यहां पे बहोत सारी पेस्ट्रीयां रखी हुई हैं और यहां पे दो केक रखे हुए हैं।